वो भी काला काला से--

उड़िया में बहोत ज्यादा पेड़ पौधा बहुत ज्यादा दिखाई दे--

चेयर लुक दिखाई दे रहे हैं और पोस्टर लोग भी है।

अ वॉशरूम और ये सब का सामान लोग है।

तल भी टंगा के है और लाइट भी जल रहा है।

पिंक कलर का पहने हैं।

अंदर में बोच द बेंच लुक है।

और उसका कलर है व्हाइट और ब्लू और फिर उसका बाहर मे एक--

बोर्ड दिखाई दे रहे हैं साइड में एक नारियल का गच्छि भी दि--

घर का कलर है पूरा येलो है और यहां से खिड़की दिखाई दे रहा है।

और वृक्ष के नीचे में एक नदी है।

और ग्रीन कलर का भी है।

खाली बोतल दो और पानी का पाइप दिखाई दे रहा है।

और इसमें से एक टी_वी चला के हैं।

और हेयर कलर भी दिखाई दे रहा है शैंपू दिखाई दे रहा है।

व्हाइट कलर का भी है ग्रीन कलर है ब्लैक कलर है ऑरेंज कलर है।

फैन भी दिखाई दे रहा है यहां से और साइड में एक कीवी टी_वी भी दिखाई दे--

बड़ा बड़ा पत्थर लोग बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है और पेड़ भी दिख रहा है।

और फिर ये गाड़ी का साइड में फिर एक भी दिखाई दे रहे।